जहां पर बोहोत सारे लोग दिख रहे हैं यह कैंटीन हो सकती है।

वहां पर उसके बाजू में सीढ़ी हैं।

करोने टाइम का है शायद ये--

ये एक कार का शोरूम हैं।

और कुछ लोग है दो लोग है जो जा रहे है।

ब्लू कलर की जींस पेहना है और ब्लैक कलर की स्लीपर है कैप लगाया हुआ है ग्रीन कलर की ऊपर ए_सी लगी हुई है बहोत ही प्यारा--